और यहां पर जालियां भी लगी हुई है।

यह एक रूम है इस रूम में आधी सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई हैं।

तीन लड़कियां हैं और यहां पर पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यह एक स्कूल है इस स्कूल में एक रूम है और यहां पर से चित्र भी है बहुत प्रकार के।

इधर चेयर रखी है जो पीले कलर की है यह खिलौनों से बनी हुई है।

इसने ब्लैक कलर की घड़ी और जैकेट पहन रखी हुई है।

यहां पर पंखे है मशीन में प्रेस आदि सामान मिलता है।

यह एक दुकान है। इस दुकान में एक बोहोत बड़ा कोन्टर दिखाई दे रहा है।

यह एक सिटी सेंटर सैलून है।

यह एक बहुत ही बड़ा घर है इस घर में ग्रिल भी लगी हुई है।

यह एक घोड़ा इस रोड पर एक बहुत बड़ा दरवाजा है।

और यहां पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक महिला है यह योगासन कर रही है यह नीचे पड़ी हुई योगासन कर रही है।

यह एक पेट्रोल पम्प है यहा पर एक मोटर और एक मोटरसाइकल और एक कार खड़ी हुई है जो व्हाइट है।

जो संतरे और व्हाइट है और यहां पर एक व्यक्ति भी है और यहां पर एक चेयर और एक काउंटर भी है।

यह पिछली तरफ से दिखाई दे रहा है और यहां पर ब दो खिड़कियां लगी हुई हैं।

और यहां पर दो ठेले भी लगे हुए हैं।

और यह अराउंड द वर्ल्ड फिटनेस जिम --

यहां पर बहुत से व्यक्ति लोग है।

और कुछ व्यक्ति खड़े हैं महिला भी खड़ी है।

और यहां पर एक बहोत बड़ा काउंटर है इस पर सामान रखा हुआ है और यहां पर एक चेयर भी है।

और यहां पर लकड़िया और पड़ा है और यहां पर घास पुस भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत ही बड़ी दुकान है ई दुकान में कई प्रकार का सामान रखा हुआ है।

यहां पर सीटें भी रखी है जो वाइट कलर की है।

यहां पर बहुत सी ग्रीना लगी है और यहां पर एक महिला भी है जिसने साड़ी पहन रखी है यह पीले कलर की है।

यहां पर बहुत सा सामान मिलता है।

इस जंगल में कई प्र प्रकार के पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।